और एक प्लास्टिक का कुर्सी रखा हुआ है रेड कलर का और हम्म उम्म कोई ब्लैक कलर का जैकेट भी रखा हुआ हैं बोहोत सारा। कोई ब्लू कलर का जैकेट रखा हुआ है।

इस तस्वीर में दो कुर्सी दिख रही हैं जोकि ब्लैक कलर की हैं। सोफा जैसी कुर्सी दिख रही है। दो मोटरबाइक दिख रहे हैं जोकि ब्लैक कलर के हैं और एक आगे भी मोटरबाइक दिख रहा है जोकि ब्लैक कलर का है।